पत्थरों से बनीं हुई सीढ़ियां दिखाई पड़ रही हैं और काफी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।

यहां सामने काफी लोग मास्क पहन के और हेलमेट पहन के दिखाई पड़ रहे हैं।

नीचे काफी पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति पत्थर तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

यहां सामने काफी सब्जियां दिखाई पड़ रही हैं जिसमें टमाटर परवल गोभी कद्दू केले रखे हुएं हैं।

काफी लोग खड़े खरीदारी करते और बेचते दिखाई पड़ रहे हैं।

रोशनी पूरी पड़ रही है और ये खूबसूरत नजारा है।

यह एक मुख्य रूप का दृश्य है।

काफी व्यक्ति बाहर खड़े हैं जो मास्क लगाए हुए हैं ।

इस चित्र में एक मछली की प्रजाति दिखाई दे रही है जिसको मुख्यतः झिंगा के नाम से जानते है।

इस चारदीवारी के आसपास काफी घर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

चित्र में एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

बाई ओर नीचे साइड में एक जनरेटर लगा हुआ है।

जिसमें एक व्यक्ति जैकेट पहन के चप्पू चल रहा है और दो व्यक्ति आगे जैकेट पहन के बैठे हुए हैं।

एक नांव भी दिखाई पड़ रही है।

बीच में काफी पानियों का जमा जमाव वाला एरिया बना हुआ है।

काफी व्यक्ति यहां पे पानी में मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बॉल के पास एक युवती भी दिखाई पड़ रही है।

उसके चारों तरफ बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए हैं।

रिक्शा के बगल में एक व्यक्ति खड़ा है जो तंबाकू बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

काफी लाइटें लगी हुई है।

रास्ते के दोनों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक छोटी सी जलधारा भी बहती हुई दिखाई पड़ रही हैं।